एक बड़ा मैदान भी दिखाई दे रहा हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक इंसान है टेबल है।

और कुछ नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक दुकाने दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है।

वे घर की छत पर कुछ बना रहे हैं।

इस घर में एक नीचे एक कमरा भी है।

जिसमें बहुत सारे सप्लीमेंट --

वेह ऐ_सी को ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा ट्रक दिखाई दे रहा है।

नीचे एक सुंदर सा बेड है जिसके साइड में--

और बाकी की दो प्लेट में--